मार्केट भी देखने में बहुत अच्छे लग रहे दुकान में आने वाले जो व्यक्ति हैं वह भी अच्छे अच्छे--

ये सब बहुत सुंदर और सुशील लेखा लग रहे हैं यहां पर चारों तरफ ही पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे हैं शीशा फीसा है सिर्फ।

और बादल भी बहुत अच्छे देखाई पड़ रहे है लग रहा है कि बारिश होने वाली हैं।